यह एक एक्जामिनेशन हॉल लग रहा है जिसमे बोहोत सारा केबिन बना हुआ है चेयर लगा हुआ है और पंखा भी है और अ गेट है। तीन-चार कॉटन है।

इसमें डिटॉल विटोल भी है और मग्गी है बिस्किट है बोहोत सारा सामान है जो की डेली यूज में आता है और --

और बच- बहोत सारे बच्चे यहाँ पे जिम कर रहे है और एक लेडीज भी जिम कर रही है और बहोत सारी फूल पत्तियाँ भी यहाँ पे गिरे हुए है।

यहाँ एक सरक है सरक के किनारे एक नदी है।